सामने दो बड़े-बड़े पेड़ है और एक खम्बा लगा हुआ है जिसमे एक लाईट टंगी हुई है।

और सामने एक सफ़ेद रंग का बड़ा घर है।

जिसमे आदमी अपने आपको देख रहा है।

यहाँ पे कुछ आदमी जंगल में घूम रहे है।

इस मे से एक ने गुलाबी रंग का और एक ने नीला रंग का कपड़ा पहना हुआ है यहाँ पे--

यहाँ पे बहोत बड़ी सी मछली रखी हुई है जिसके पास एक आदमी खड़ा हुआ है।

तालाब है जहाँ पे बहोत सारा पानी है यहाँ पे बहोत सारे पत्थर भी है यहाँ पे--